यह एक सब्जी मंडी का दृश्य है।

बड़े बड़े झोले भी इस बाजार में दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर बहोत से लोग आ और जा रहे हैं।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

यहां पर बाहर में एक अशोक का पेड़ भी लगा हुआ है।

यहां पर जिम करने के लिए बहौत से मशीन और इक्विपमेंट भी रखे हुए है।

यह एक चिल्ड्रन पार्क का दृश्य है।

अंदर में लाल कारपेट बिछाया हुआ है।

बहोत सी गाड़ियां और रिक्शे खड़े हैं।

यहां पर बहोत से लोग टहल रहे हैं।

एक टूटा हुआ अल्बेस्टर का घर भी दिखाई दे रहा है।

रास्ता के किनारे बहोत से कचड़े इकट्ठे हैं।

एक व्यक्ति यहां पर खड़ा होकर कुछ हाथ में रगड़ रहा है।

आसपास में बहुत से लाइट और ए_सी लगे हुए हैं।

यहां पर कुछ अन्य गाड़ियां भी खड़ी है।